बाहर कुछ लोग खड़े हुए दिनके हाथों में थैलियां और कुछ बैग टंगे दिखाई दे रहे हैं। लाल अक्षर में नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। शटर के ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं। पास में एक शटर बंद दिखाई दे रहा है। कुछ --

नदी मे आते व्यक्त दो दिखाई दे रहे है जिधर एक पानी मे हैबहता व आता दिखाई दे रहा हैं ऊपर से कुछ पानी दीवार जैसा बंधा है उसके ऊपर से बहते हुए आ रहा है।

पीछे एक रैलिंग लगी हुई दिखाई दे रही है। नीचे एक स्टेज लकड़ी की दिखाई दे रहा है। जिसमें लोहे के ईगंल लगे। इसमे महिला माता की कुछ पूजा करते हुए दिखाई दे रही है और ऊपर कुछ स्टेज लगा दिखाई दे --

मार्केट का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहुत सारे फल और कुछ एक सब्जियां रखी हुई दिखाई दे रही है पीछे केरेट के ऊपर कुछ पेपर लगा है दिखाई दे रहे है।

नीचे सरिया बिछे हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके ऊपर पर कुछ लोग तगारी लेके कर उसके अंदर कुछ मैटेरियल डालते हुए दिखाई दे रहे हैं और साइड में कुछ लक पाइप दिखाई रहे हैं और गोल चकरी दिख रही है सामने के साइड में एक लोहे के पड़े दो पाइप --

छत में से कुछ सरिया बहार निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे के साइड कुछ पटिया लगे हुए हैं पटिया पड़े हुए हैं बाँस पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं | सामने कहीं देखो रेती का बड़ा सा ढेर दिखाई दे रहा है जिसके पीछे कुछ कारें खड़ी दिखाई दे रही हैं |

दीवाल का फोटो दिखाई दे रहा है जिसकी दीवाल की ईंट की दीवाल दिखाई दे रही है जिसके बीच में कुछ कलाकीर्तियाँ बनाई गई दिखाई दे रही हैं आकृति बनी दिख रही है फूल की डिजाईन दिख रही है।